फलों की टोकरियां भी दिखाई दे रही हैं।

तरबूज भी हैं अनानास भी दिखाई दे रहे हैं।

ए सी भी लग रही है और एक पेंटिंग भी है।

आईने भी दिखाई दे रहे हैं।

आदमी भी दिखाई दे रहे हैं पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

फेविकोल की बोतलें भी दिखाई दे रही हैं चप्पलें दिखाई दे रही--

डीस भी दिखाई दे रही है लाइट का खंभा भी दिखाई दे रहा है।

यह एक ऑफिस है कंप्यूटर भी दिखाई दे रहा है मोबाइल भी दिखाई दे रहा है।

पंखा भी दिखाई दे रहा है विंडो खिड़की भी दिखाई दे रही है।

दीवाल बिना लीपाई पुताई के दिखाई दे रही है।

सरिया भी दिखाई दे रहे हैं लोहे का सामान पड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

यह एक जिम है लड़का दिखाई दे रहा है।

सर पर टोकरा भी दिखाई दे रहा है।

पीछे गेट भी दिखाई दे रहा है।

टैंक भी दिखाई दे रहा है। बाइक भी दिखाई दे रही है।

तस्वीर में बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं तिरंगे भी दिखाई दे रहे हैं।

कार भी दिखाई दे रही है पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

फूलों की डेकोरेशन भी दिखाई दे रही है।

येलो कलर की और ब्लैक कलर की रेड कलर की ब्लू भी दिखाई दे रही है। ए_सी भी दिखाई दे रही है।

कुर्सी टेबल भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक हॉस्पिटल है एक भी आदमी दिखाई दे रहा है।

सूखा लकड़ी का पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

पेड़ पर छोटे छोटे फल भी दिखाई दे रहे हैं।

कप भी दिखाई दे रहे हैं केतली भी दिखाई दे रही है।

तखटे भी दिखाई दे रहे हैं।

ये भी दिखाई दे रही है।